यहाँ पे पूजा चल रही है कई सारे लोग पूजा कर रहे हैं| गन्ने की पूजा कर रहे हैं| यहाँ पे बहुत सारे गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

और दो आदमी हैं जो खाना बना रहे हैं। यहाँ पे बड़ा सा पानी का टैंकर भी खड़ा हुआ है। बहोत सारे बड़े बड़े गंजे रखे हुए हैं।

यह एक स्टेशनरी है। यहां पे पेंसिल रबर कंपास सभी चीजें आपको मिल जाती हैं। अ दुकान के बाहर एक लड़का बैठा हुआ है और दुकान के अंदर एक आदमी बैठे हुए हैं।

यह एक हॉस्पिटल है| यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं तीन सिस्टर्स भी खड़ी हुई हैं| यहाँ पे एक पानी का बोतल रखा हुआ है।

यहाँ पे बहोत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं| यहाँ पे बालू बहुत है और पहाड़ भी दिख रहा बहुत बड़ा-सा।